लाइटें दिख रही है दरवाजें दिख रहें हैं पंखे लगे हुए हैं।

चेयर्स रखी हुई है इस साइड कांच का गेट दिखाई दे रहा है सामने से --

गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग गेम खेल रहे है जेंट्स लोग दिख रहे है।

एक नाई की दुकान दिखाई दे रही है जो --

बहुत सारी लइटे लगी हुई झाड़ियां लगी हुई हैं भगवान की पिक्चर्स लगी हुई वाइट कलर पुता हुआ है |

खेत दिखाई दे रहा है खेत में सोयबीन कटाई हो रही है धान है कि सोयबीन है।

कुछ पत्थर दिखाई दे रही है चट्टानें दिखाई दे रही हैं पत्ते दिखाई दे रहे है काले कलर के ग्रीन कलर के पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं |

मम नदी दिखाई दे रही है जिसमें पानी बेह रहा है ऊपर से।

टेल दिख रहे है पेन कॉपी दिख रही है एक जेंट्स खड़ा हुआ है साइड में।

एक अकादमी दिखाई दे रही है इस अकादमी में --

एक नदी दिखाई दे रही है नदी में कुछ लोग तैर रहे हैं नदी में पानी भरा हुआ --

यहां पर कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं मछली दिखाई दे रही हैं।

बादल दिखाई दे रहे है रंग-बिरंगे।

जो ईटो से बने हुए खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है लाइट वाला तार दिखाई दे रहा --

एक रिंग टाइप ईट पड़ी हुई है कुछ लोग खड़े हुए हैं कपड़े टंगे हुए हैं पलंग दिखाई दे रहा है।